रेड कलर के और साथ ही में ना बहोत सारी शेडेड बुक्स रखी हुई है रे और है ना कांच के ऊपर और कांच के नीचे केसीओ का कैलकुलेटर रखा हुआ है।

हाथ में लेके है ना उसका शावर वो उसका मसाज कर रहा है प्रिंट चेक पेन चेक शर्ट पहनी है और ब्लैक पैंट पहनी हुई है उसने भी कस्टमर ने भी ब्लैक पैंट पहनी हुई --

दिल सा बना हुआ है हार्ट सा बना हुआ है साथ में लाइटिंग लगी हुई है ब्लू कलर की येलो कलर की और ग्रीन इफेक्ट पड़ रहा है ग्रीन पट्टी बिछी हुई है लाइटिंग प्रोजेक्टर लगे हुए है साथ ही में ब्लू कलर पिंक कलर के लगे हुए हैं ।

तालाब है जिसमे एक दो लोग नाव लेके चला रहे हैं। जिसमे है एक नाव पे लिखा हुआ है फ्री बिल फ्री लिखा हुआ है। दो व्यक्ति जोकि चश्मा लगाए ब्लैक काला चश्मा लगाए --

आगे बढ़ रहे हैं और साथी में जैकेट पहना हुआ है सेफ्टी जैकेट पहना हुआ है पीला कलर पेअर है बहोत सारे ग्रीन कलर के बादल हैं ब्लू कलर के बहोत सारे हैं ।

यह एक सैलून है। जिसमें चॉकलेटी कलर की चेयर लगी हुई है साथ ही में व्हाइट भी स्टैंड लगा हुआ है और साथ ही में बहोत सारी क्रीम रखी हुई है आईना है और साथ ही में एक रुमाल है जो कि नीला कलर का लाइनिंग बनी हुई है।

साथ ही में ऑरेंज कलर का स्टीकर है रेड कलर का ग्रीन कलर का लगा हुआ है । एक लोगो और दो एक आंटी और औरत है जो कि स्टीकर में है ।

साथ ही मे और ऑरेंज कलर की पट्टी लगी हुई हैं और जिसमें बहोत सारे बटन्स हैं साथ ही मे दो मशीन ब्लैक कलर की रखी हुई है ।

एक जिम सेंटर मशीन जिम सेंटर है जो कि ऑरेंज कलर का ऑरेंज येलो कलर का दीवाल पिलर लगी हुई है साथ में एक व्यक्ति है जो कि बैठा हुआ है साथ ही में ब्लू कलर का और साथ में बहोत सारी मशीन लगी हुई है । जो --